यहाँ पर बहुत सारी बस दिख रही हैं और पानी बरस रहा है और यहाँ पे दो तीन दुकान भी रखी हुई हैं। एक लेडीज दिख रही है।

पुल के पीछे बहुत सारे घर बने हुए हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए --

और नीचे लाइन में पिंक कलर का है और दो खिड़की लगी हुई है और ऑरेंज कलर की पुताई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है। बस ब्लू कलर की है और घर भी बहुत सुंदर लग रहा है। हरी भरी घाँस लगी हुई है।

यहाँ पर एक बस रखी हुई है। दो बाइक रखी हुई हैं और बाउंड्री खींची हुई है। बहोत बड़ा मैदान है।

और लोहे का गेट लगा हुआ है। एक खंबा भी लगा हुआ है। दो खिड़की लगी हुईं हैं ।

यह बहुत बड़ा महान बना हुआ है। यहाँ पर पीछे पेड़-पोधे लगे हुए हैं। एक ड्राम भी रखा हुआ है यहाँ पे।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

यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। उसके बगल पे बाइक रखी हुई है और बहुत सारी बस रखी हुई हैं।

यहाँ पर एक घर बना हुआ है। घर पर एक बैनर लगा हुआ है और घर के पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुएँ हैं। आंगे भी बहुत अच्छी हरियाली लगी हुई है।